जिसकी शटर लगी हुई है शटर का वाइट कलर है।

दिखाई दे रही है रेस्टोरेंट के बाहर पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे है।

दे रहा है गांव के अंदर--

पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गांव खेलने का ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के पास में--

टंगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने लोहे की रैक पर--

बना हुआ दिखाई दे रहा है मॉल के अंदर--

दे रहा है जहां दो तीन जाने जाते हुए दिखाई--

यहां पर एक बड़ा सा धूल--

दिखाई दे रहा है जिसमें लकड़ी की--

दे रही है यहां बीच में एक वाइट कलर का बोर्ड भी--

दिख रहा है काउंटर पर दो लैपटॉप दिख रहे हैं जिस पे भैया उन।

हॉल दिख रहा है जिसके ऊपर पतरे का शेड लगा हुआ--

इनके पीछे नाग देवता की मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक ऑफिस में एक साइड कांच लगे हुए--

दिखाइ दे रहे हैं इसमें एक कांच का गेट भी--